दिखाई दे रहे है मंदिर के शिखर दिखाई दे रहे हैं मंदिर के ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है मंदिर का रंग सफेद है और----

बहुत बड़ा कंप्यूटर लैब दिखाई दे रहा है वहां पर बहुत सारे टेबल दिखाई दे रहे है हरे कलर की कुर्सियां दिखाई दे रही है लोहे की।

और बोर्ड के ऊपर माँ सरस्वती की और भोलेनाथ की फोटो लगी हुई है और दीवार का रंग गुलाबी दिखाई दे रहा है नीचे ब्लैंक दिखाई दे रहा है।

और पानी में ब्रीज दिखाई दे रहे है आसमान का कलर नीला और काला दिखाई दे रहा है और-र साइड से भी काली-काली पहाड़ी दिखाई दे रही --